यहां पे मंदिर जो बनाया गया है जो बहुत सारी डिजाइन काट के बनाया गया है रेड पीले ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है मंदिर।

शोरूम पर एक आदमी खड़ा भी है एक ब्ल्यू कलर का भी कार है शोरूम जो है टाइल्स लगा के व्हाइट कलर का बनाया हुआ हैं।

बहुत सारे कुर्सियां भी हैं ऊपर पे लाइट लगाया हुआ है एक पंखे भी लगाया गया है।

यहां पे बहुत सारे फूल रखा हुआ है जो रेड अह पीले कलर का है।

यह एक शोरूम है शोरूम है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

नीचे की ओर बहुत सारे मकान है जो व्हाइट कलर के दिख रहे हैं।

यहां पे नौ पेंट का डीबा रखा हुआ है जिसमें व्हाइट ब्लू पीले कलर का है ठेपी कसा गया है जो हरे कलर का है।

ईंटे का डिज़ाइन दे के बनाया गया है सीमेंट वाला जिसमें रेड व्हाइट कलर का है उधर एक दुकान भी है दो--

पिच रोड भी बनाया गया है जो सीमेंट के ढाल के बनाया होता है।

यह एक मॉल है मॉल है जो व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है मॉल के ऊपर पे लाइट लगाया हुआ है।

यहां पे ब्लू कलर का भी लाइट लगाया गया है यहां पे लिखा हुआ है ए_ए_यू_आर_यू_एम

यहां पे बहुत सारे लोग हैं जिसमें एक आदमी बैग भी लिए हुए एक कुर्सी भी हैं।